वाहनों की प्रदर्शनी लगी हुई हैं।

और कुछ बंदर ऊपर रेलिंग पर भी लेट रहे हैं।

जो देखने में अत्यंत आकर्षक और साफ सुथरी प्रतीत हो रही है।

और जिसके द्वारा हम अपने आप को फिट कर सकते हैं।